सामने वाल सोफा रखा हुआ है बड़ा सा सफेद कलर का।

नीचे लाइन से बोहोत सारी चेयर लगी हैं उस पर एक आदमी बैठा है सफेद टी शर्ट पहने।

अंदर वाल बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे निकाल रहे हैं।

कमरे की दीवारें सफेद कलर की हैं और बहुत सारे तार लटक रहे हैं।

सामने वाले पेप्सी की मशीन रखी हुई है।

छतों पर छोटी-छोटी लाइटे और बगल में झूमर लटके हैं।